यह केनरा बैंक है।

तथा ये कनेरा बैंक का मैन गेट है।

अच्छा दिख रहा है बट पुराना होने के साथ इसके कलर और पेंट थोडा उड़ गये हैं।